जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में खुबसूरत है लोग सभी लोग लेडीज है लोग जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में सब सुंदर लग रहा है।

पेट्रोल टंकी है जो पेट्रोल टंकी में अपना तेल भरवाते है लोग गाड़ी मे अ गाड़ी मे भरवा के चलाते है लोग। इसलिए पेट्रोल टंकी है पेट्रोल टंकी मे तेल-उल भरवा लेते है लोग --

ये नृत्य कर रहे हैं लोग लेडीज लोग बहुत अच्छा लग रहा है देख के और नृत्य कर के अपना जो भी होगा प्रोग्राम बहुत अच्छे से कर रही हैं लोग डांस कर रही है लोग।

ये बहोत खूबसूरत लग रही है दोनों पा पानी पूरा अगल बगल पूरा पानी है अलग-अलग समुन्द्र है और इधर साइड में लेडीज लो है लोग दो लेडीज हैं ।

पूरा दम लग रहा है गाँव का बच्चा सब है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है सब को समझा रहे हैं बता रहे हैं अम एक लंगू-पंगु इस तरह खड़ा है बच्चा जो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है ।